ये कार पार्किंग की जगह है इसमे बहोत सारी कार पार्किंग की गयी है।

शोपिंग मॉल है यह एक शोपिंग मॉल है साड़ियाँ रखी हुई है शूज़ है बैठने के लिए जगह है।

ये कुछ महिलाये गांव की महिला है अपने सिर पर--

ये एडिटिंग बहोत ही सुंदर है।